मुख्य कार्यक्रम होने वाला हैं।

मॉल के अंदर गेम जोन की दि--

यहां पर अभी कोई नहीं आया है।

अपनी समस्याएं लेकर आते होंगे।

यह तस्वीर बहुत ही सुखदाई प्रतीत होती है।

इस साड़ी की दुकान का नाम है आईना कलेक्शन --

यह आकर्षक लग रही है।

यह तस्वीर किसी नर शरीर की लग रही है।

घर की महसूस होती है।

सारे लोग खड़े हुए दिखाई पड़ रहे--

धागा बुनने का काम होता होगा शायद।

तस्वीर में मानो ऐसा प्रतीत होता है--

इस तस्वीर में तरह तरह के मोबाइल दिख रहे हैं।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

व्यक्ति यहां पर अपना काम पूरा करने आया--

यह फोटो एक गुड़िया का है।

यह फोटो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

इस डांस स्टूडियो का नाम डी_एन है।

यह तस्वीर किसी पुराने महाराजा के किले जैसी दिख रही है।

यहां पर्यटक वगैरह घूमने और फिरने आते होंगे शायद ऐसा लगता।

यहां पर लोग अपना सूट वगैरा बनवाने आते होंगे--

जैसे की लोग अपनी दूसरों की शादी में पहनते हैं।